ये एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बहोत सारे अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं।

ये एक बड़ी सी ग्रोसरी दुकान है और ये दुकान के अंदर बहोत सारे सेल्फ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ सेल्फ के अंदर बहोत सारे डब्बे दिखाई दे रहे हैं और यहां पे--

ये एक शोरूम दिखाई दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है।

जीप दिखाई दे रहे हैं और यहां पर टू व्हीलर गाड़ियां है और यहां बहोत सारे लोग तरकारी खरीद रहे हैं।

और यहां हरे भरे पेड़ है।

बहोत सारी मिट्टी है और यहाँ पे बड़ा सा पाइप है हरे भरे घास है और यहाँ पर--

एक बड़ा सा बैडमिंटन कोर्ट दिखाई दे रहा है यहां पे बीच में नेट की जाली दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे बहोत सारे लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं यहाँ पे बॉल और यहाँ पे हाथ में बैडमिंटन है और यहाँ --

बहोत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे सिटिंग चेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे दुकान के अंदर बहुत सारे लाइट्स है सेल्फ है नए मोबाइल्स दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे काले रंग के चेयर्स दिखाई दे रहे हैं केबिन ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यहां पे एक बड़ा सा डोर दिखाई दे रहा है जो की ब्लू कलर का है और यहां केबिन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लाइट्स हैं ए_सी और यहां पे बहुत सारे फैंस भी है।

यहां पे एक बड़ी सड़क दिखाई दे रही है और यहां सड़क पे ऑटो और गाड़ियां दिखाई दे रही है बिजली के दो खंबे है बहोत सारे वायर से बड़े पेड़ है और यहां पे बहोत सारे कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे है कुछ कॉम्प्लेक्स बंद है कुछ खुले हैं।

ये एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है इसका नाम है डॉक्टर ए_पी_जे अब्दुल कलाम लाइब्रेरी ।--